सामने बिल्डिंगें दिख रही है बिल्डिंग में गेट है विंडो लगी हुई है।

सामने एक हाल है हाल में कुछ अ लाइट्स लगी हुई हैं फैन लगा हुआ है नीचे वाइट कलर का --

टेबल पे येलो कलर का कपड़ा है और चेयर को रेड कलर के कपड़े से कवर किया हुआ है येलो कलर से--

और चेयर लगी हुई है ब्लू कलर की सब--

कुछ लोग बैठे हैं अपने-अपने काउंटर पे रूम में एसी लगा हुआ है लाइट्स लगी हुई है।

टावर लगा हुआ है वो खंबे लगे हुए हैं वायर कनेक्टेड है और--

उनके हाथ में प्लेट है प्लेट में खाना है बैठ के कुछ खाना खा रहे हैं कुछ लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं।

प्लेट्स रखी हुई है मेमो रखा हुआ है हेलमेट रखा हुआ है चेयर पे कुछ लोग बैठे हैं।

सामने घर दिख रहा है उस पे टीन का सेट लगा हुआ है खंबा--

लगा हुआ है खंबे में वायर लगी हुई है सामने एक ऑरेंज कलर का घर दिख रहा है ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ घर दिख रहा है।

मुझे डेक्स दिख रहा है डेक्स पे बहुत सारे एसेसरीज रखे हुए हैं।

कुछ बने हुए हैं क्राफ्ट किया हुआ है।

उम्म चाय की कप दिख रही है बने हुए अंदर लाइट्स लगी हुई हैं।

और वॉल पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा है मैरून कलर का उसपे--

और उनको फूलों से अच्छे से सजाया गया है।

एक बड़ा सा रेस्टुरेंट लग रहा है जिसमें बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है।

डेकोरेशन जैसे सामान रखे हुए हैं फैन लगा हुआ है।

ये सामने एक राउंड दिख रहा है और बिल्डिंग अभी बन रहा है जिसमें ग्रीन कलर के बहुत सारे कर्टन टंगे हुए हैं लकड़ी के बांस लगे हुए हैं।

और बहोत सारी ईट रखी हुई है चेयर रखा हुआ है।

और नीचे ग्राउंड है लोहे का पाइप दिख रहा है।

और बोर्ड को फूलों से सजाया गया है ग्रीन मैट दिख रहा है बालूंस दिख रहे हैं।

येलो कलर का गेट है सामने बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग में खिड़की लगे हुए हैं।

सोफा रखा हुआ है। नीचे कालीन बीच हुई है।

बीच में सड़क दिख रही है सामने कर्टेन ग्रीन कर्टेन लगा हुआ है।

और ख लोहे का खंबा लगा हुआ है।

और डस्टबीन रखी हुई है ग्रीन कलर की और सामने बाउंड्री है।

उन्होंने फूल पेहैंट का माला पहनाया हुआ है।

सामने मुझे डेक्स दिख रहा है उस पर चश्मा रखा हुआ है रुमाल रखा हुआ है कप दिख रहा है।

और लड़के बैठे हुए उसके हाथ में कप रखा हुआ है।

और एक रूम है पीछे डेक्स रखा हुआ है उसपे कुछ कप्स रखे हुए हैं लाइट्स लगी--

और काउंटर पे मोबाइल रखा हुआ है स्प्रे बोतल रखा हुआ है।

प्लास्टिक का वो स्टैंड रखा हुआ है जिसमें क्रीम के डब्बे रखे हुए हैं मिरर के साइड साइड में--

बाइक पे कुछ बैग रख के टंगे हुए हैं साइड में वाइट कलर के--

अ अ गाय बैठी हुई हैं भैंस बैठे हुए हैं काले रंग के--

बोर्ड लगा हुआ है चेयर रखी हुई है।

सामने का एक आदमी बैठा है चेयर पे काउंटर के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है।

और बाहर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं जिसमें पौधे हैं कुछ फूल है।

और वो ब्लैक कलर की मार्बल लगी हुई है।